वहाँ पर हमें एक नीले कलर का एक टीन भी लगा हुआ है देखो प्लास्टर का एक दुकान भी दि दिखाई दे रही है वहाँ पर टीन विन भी वहाँ पर डब्बे भी रखे हुए है कुर्सियां भी रखी हुई है दुकाने भी रखी हुई है।

सफेद कलर का दिखाई दिये बाटी सफेद कलर का उसमे वाहिट कलर के पुता हुआ है यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जोकि कुर्सी बैठा हुआ बगल में एक कुर्सी रखी हुई है।

एक चिह्न भी लगा हुआ है एक औरत भी दिखाई दे रही जो कि बस बोल रहे ना चाहती है वहाँ पर कुर्सी भी रखी हुई है और एक अअ परेद लगे हुई है भगवान भी बहुत सुंदर लग रहा है।

ऐसा कि आप देख सकते है यहाँ पर औरतें दिखाई दे रही है जोकि डांस कर रही है एक लुगाई भी कर रही है और आदमी भी कर रहे है अलग-अलग प्रकार की और झूम रही है बल्ब भी लगे ही है देखने में सुंदर है बहोत आदमी जनता बहोत जूरी हुई है।

भी लगी हुई हैं जो की देखने में बहुत सुंदर लग रहे है आदमी बहुत खराब लग रहे है ऊपर पंखा भी लगा हुआ है।